तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके बाहर हमें एक गेट दिखाई दे रहा है जो कि लोहे का गेट दिखाई दे रहा है बिल्डिंग हमें सफ़ेद कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें एक मूर्ति दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें नीचे एक गार्डन दिखाई दे रहा है यहाँ पे --

दिखाई दे रहे बाहर हमे मिट्टी के पास में हमे पानी दिखाई दे रही झंडा देखई दे रहा खुला आसमान दिखाई दे रहा झाड़ और पौधे दिखाई दे रहे और बांस के डंडे दिखाई दे रहे।

पास पे हमें बहुत सार लगेज दिखाई दे रहे है कार्टून दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे हमें लैंप लाइट दिखाई दे रहे है बिजली के तार दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे दरवाज़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें टेलीफोन स्टेपलर पेंसिल बॉक्स दिखाई दे रहा है पंखा दिखाई दे रहा है।

स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा खिड़कियां हमे लोहे की दिखाई दे रही यहां पे गेट दिखाई दे रहा स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा वायर दिखाई --

इस तस्वीर में हम देख सकते है यहाँ पर हमें एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर हमें एक सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे एक टेंट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ दिखाई दे रही है।